यहां पर एक रेड है एक वाइट है एक ब्लू कलर की हैं।

यह एक दुकान है नाई की जहां पर सामने घास लगी हुई है बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं।

इसका कलर ब्ल्यू है दरवाजे का कलर ब्ल्यू है यहां पर एक पंखा लगा हुआ है ए_सी लगी हुई है।

पीले हरे रेड कलर के मिलते हैं यहां पर दीवार का कलर रेड है।

यह एक हार्डवेयर की दुकान है जहां पर वाश बेसिन टॉयलेट रखे हुए हैं नल रखे हुए हैं हैंड वेयर हैं।

यह एक मंदिर का रास्ता है एंड जहां पर एक बड़ा मंदिर है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक में का सामान मिलता है छोटा बड़ा जैसे पंखा ऐसे वैसे कुछ भी ड्रिल मशीन --

पाइप वगैरा रखे हुए हैं यहां पर अलग अलग खोके पड़े हुए हैं कागज के जो अलग अलग सामान रखा हुआ है।

यहां पर शाम के समय भीड़ रहती हैं लोग घूमने के लिए आते रहते हैं यहां घूमने के लिए अच्छी जगह है।

ये बहुत ही अच्छा कैफे है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं एक अच्छा कैफे हैं और कुछ मेनू कार्ड पड़े हुए हैं।

सारे गुड्डा गुड्डी घोड़ा घोड़ी गाड़ी भी पड़ी हुवे हैं बैठने के लिए बेंच स्टूल आदि खेलने के लिए गाड़ी --

येलो कलर की ब्लू कलर की रेड कलर की टिशू पेपर पड़े हुए हैं मेनू कार्ड पड़ा हुआ है सोफे रखे हुए हैं रेड कलर के --